बैठी हुई है और कुछ खड़ी है साथ में गोलाकार --

बड़ा ही सुंदर बगीचा है जिसमें चढ़ने के लिए बहोत ही सुंदर वृत्ताकार दरवाजा बनाया हुआ है।

हाथ में लाल रंग का धागा और नीले रंग हरे रंग की टी शर्ट और काले रंग की कैप्री पहने हुए खड़ा हैं ।

पैंट किया हुआ है और उसकी छत पर बहुत ही सुंदर प्लस का साइन बना--

एक बड़े से हॉल में छोटी-छोटी बच्चियों--

एक मंजिला इमारत है जिसमें सफेद और आसमानी रंग के टींस लगाई हुई है छत--

माता की मूर्ति लगी हुई है चारों तरफ बड़ा- सा हॉल है और साथ में कृष्ण भगवान और अन्य देवी- देवताओं की मूर्तियाँ हैं।

रंग के गमले रखे हुए हैं जिनमें पीले लाल --

पानी ही पानी है पानी नीले हरे रंग का है और लहरे बनी हुई है।

बॉडी को दर्शा रहा है चारों तरफ हरे रंग के कारपेट और नीले रंग--

बागीचे बनाए हुए है और फूल लगाए हुए है कुछ पत्तियों का रंग हरा है और कुछ पतियों का रंग पीला है बाहर--

और लाइटिंग के लिए लैंप लगाया हुआ है।

मैच हैयर इन लिखा हुआ है।